बड़ी सारी टेबल्स रखी हुई है और कुछ लड़के कुर्सी पर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं और पीछे --

यहां से यहां सामने एक कन्नी भोजनालय नाम से एक दुकान दिखाई दे रही है और उसके बाद बाबा भैरुनाथ भोजनालय दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट नाम से एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैन --

छोटे यहां सामने एक बड़ा सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ तार्स --

गोल चक्कर दिखाई दे रहा है और उसके पीछे उसके आगे पेड़ लगे हुए हैं।

और उसके पास कुछ बॉक्स मे इलेक्ट्रॉनिक समान रखा हुआ है जिससे लकड़ी --

मैदान दिखाई दे रहा है मैदान के अंदर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं यह पेड़ बहुत अच्छे हैं।

दो एक मैडम और बाकी सब लड़कियां दिखाई दे रही है जो कुछ टेबल पर सामान रखा हुआ है उसकी पेंटिंग करते हुए दिख रही --

यहां सामने एक बड़ा सारा रोड का मैदान दिखाई दे रहा है इस रोड के अंदर कुछ ब्लोक लगाए हुए हैं जो रोड वाले ब्लोक होते --

और इसके अंदर डॉक्टर खुद चेक करने मरीजों को आता है और सभी बेड पर कुछ मरीज सूत लेते हैं।

और बॉक्स बहोत लंबे व्हाइट कलर के--

अपने घर के अंदर खोला हुआ दिखाई दे रहा है यहां कुछ गाड़ियां रिपेयरिंग होने के लिए आई हुई दिख रही है।

के पास एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो उस मशीन को चला रहा है जो मशीन चालू दिखाई दे रही है।